मेरे प्यारे देशवासियो नमस्कार
मन की बात के 110वें एपिसोड में आपका स्वागत है
हमेशा की तरह इस बार भी हमें आपके ढ़ेर सारे सुझाव इनपुट्स और कमेंट्स मिले हैं
और हमेशा की तरह इस बार भी ये चुनौती है कि एपिसोड में किनकिन विषयों को शामिल किया जाए
मुझे पॉजिटिविटी से भरे एक से बढ़कर एक इनपुट्स मिले हैं
इनमें बहुत सारे ऐसे देशवासियों का जिक्र है जो दूसरों के लिए उम्मीद की किरण बनकर उनके जीवन में बेहतरी लाने में जुटे हुए हैं
साथियो कुछ ही दिन बाद 8 मार्च को हम महिला दिवस मनाएंगे
ये विशेष दिन देश की विकास यात्रा में नारीशक्ति के योगदान को नमन करने का अवसर होता है
महाकवि भरतियार जी ने कहा है कि विश्व तभी समृद्ध होगा जब महिलाओं को समान अवसर मिलेंगे
आज भारत की नारीशक्ति हर क्षेत्र में प्रगति की नई ऊँचाइयों को छू रही है
कुछ वर्ष पहले तक किसने सोचा था कि हमारे देश में गाँव में रहने वाली महिलायें भी ड्रोन उड़ाएंगी लेकिन आज ये संभव हो रहा है
आज तो गाँवगाँव में ड्रोन दीदी की इतनी चर्चा हो रही है हर किसी की जुबान पर नमो ड्रोन दीदी नमो ड्रोन दीदी ये चल पड़ा है
हर कोई इनके विषय में चर्चा कर रहा है
एक बहुत बड़ी जिज्ञासा पैदा हुई है और इसीलिए मैंने भी सोचा कि क्यों ना इस बार मन की बात में एक नमो ड्रोन दीदी से बात की जाए
हमारे साथ इस वक्त नमो ड्रोन दीदी सुनीता जी जुड़ी हुई हैं जो उत्तर प्रदेश के सीतापुर से है
आइए उनसे बात करते हैं
सुनीता देवी जी आपको नमस्कार
नमस्ते सर
अच्छा सुनीता जी पहले मैं आपके विषय में जानना चाहता हूँ आपके परिवार के विषय में जानना चाहता हूँ
थोड़ा कुछ बता दीजिये
सर हमारे परिवार में दो बच्चे हैं हम हैं हसबैंड हैं माता जी हैं मेरी
आपकी पढ़ाई क्या हुई सुनीता जी
सर बा फाइनल है
और वैसे घर में कारोबार वगैरह क्या है
कारोबार वगैरह खेतीबाड़ी सम्बंधित करते हैं खेती वगैरह
अच्छा सुनीता जी ये ड्रोन दीदी बनने का आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ
आपको ट्रेनिंग कहाँ मिली कैसेकैसे बदलाव क्या आया मुझे पहले से जानना है
जी सर ट्रेनिंग हमारी फूलपुर इफको कंपनी में हुआ था इलाहाबाद में और वहीं से हमको ट्रेनिंग मिली है
तो तब तक आपने ड्रोन के विषय में सुना था कभी
सर सुना नहीं था एक बार ऐसे देखे थे कृषि विज्ञान केंद्र जो सीतापुर का है वहां पे हमने देखा था पहली बार वहाँ देखा था हमने ड्रोन
सुनीता जी मुझे ये समझना है कि मानो आप पहले दिन गए
पहले दिन आपका ड्रोन दिखाया होगा फिर कुछ बोर्ड पर पढ़ाया गया होगा कागज़ पर पढ़ाया गया होगा फिर मैदान में ले जाकर प्रैक्टिस क्याक्या हुआ होगा
आप मुझे समझा सकती हैं पूरा वर्णन
जी सर पहले दिन सर हम लोग जब गए हैं तब उसके दूसरे दिन से हम लोगों की ट्रेनिंग शुरू हुई थी
पहले तो थियोरी पढ़ाई गई थी फिर क्लास चले थे दो दिन
क्लास में ड्रोन में क्या क्या पार्ट हैं कैसेकैसे आपको क्याक्या करना है ये सारी चीज़ें थियोरी में पढ़ाई गई थी
तीसरे दिन सर हम लोगों का पेपर हुआ था उसके बाद में फिर सर एक कम्प्यूटर पे भी पेपर हुआ था मतलब पहले क्लास चला उसके बाद में टेस्ट लिया गया
फिर प्रैक्टिकल करवाया गया था हम लोगों का मतलब ड्रोन कैसे उड़ाना है कैसेकैसे मतलब आपको कंट्रोल कैसे संभालना है हर चीज़ सिखाई गई थी प्रैक्टिकल के तौर में
फिर ड्रोन काम क्या करेगा वो कैसे सिखाया
सर ड्रोन काम करेगा कि जैसे अभी फसल बड़ी हो रही है
बरसात का मौसम या कुछ भी ऐसे बरसात में दिक्कत होती खेत में फसल में हम लोग घुस नहीं पा रहे हैं तो कैसे मजदूर अन्दर जाएगा तो इसके माध्यम से बहुत फायदा किसानों को होगा और वहाँ खेत में घुसना भी नहीं पड़ेगा
हमारा ड्रोन जो हम मजदूर लगाकर अपना काम करते हैं वो हमारा ड्रोन से मेढ़ पे खड़े होके हम अपना वो कर सकते हैं कोई कीड़ामकोड़ा अगर खेत के अन्दर है उससे हमें सावधानी भी बरतनी रहेगी कोई दिक्कत नहीं हो सकती है और किसानों को भी बहुत अच्छा लग रहा है
सर हमने 35 एकड़ स्प्रे कर चुके हैं अभी तक
तो किसानों को भी समझ है कि इसका फायदा है
जी सर किसानों को बहुत संतुष्ट होते हैं कह रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा
समय का भी बचत होता हैसारी सुविधा आप खुद देखती हैं पानी दवा सब कुछ साथसाथ में रखती है और हम लोगों को सिर्फ आकर खेत बताना पड़ता है कि कहां से कहां तक मेरा खेत है और सारा काम आधे घंटे में ही निपटा देती हूँ
तो ये ड्रोन देखने के लिए और लोग भी आते होंगे फिर तो
सर बहुत भीड़ लग जाती है ड्रोन देखने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं
जो बड़े बड़े फार्मर्स लोग हैं वो लोग नंबर भी ले जाते हैं कि हम भी आपको बुलाएँगे स्प्रे के लिए
क्योंकि मेरा एक मिशन है लखपति दीदी बनाने का अगर आज देश भर की बहनें सुन रही हैं तो एक ड्रोन दीदी आज पहली बार मेरे साथ बात कर रही है तो क्या कहना चाहेंगी आप
जैसे आज मैं अकेले ड्रोन दीदी हूँ तो ऐसी ही हजारों बहनें आगे आएं कि मेरे जैसे ड्रोन दीदी वो भी बने और मुझे बहुत खुशी होगी कि जब मैं अकेली हूँ मेरे साथ में और हजारों लोग खड़े होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि हम अकेले नहीं बहुत सारे लोग हमारे साथ में ड्रोन दीदी के नाम से पहचानी जाती हैं
चलिए सुनीता जी मेरी तरफ से आपको बहुतबहुत बधाई
ये नमो ड्रोन दीदी ये देश में कृषि को आधुनिक बनाने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन रही है
मेरी बहुतबहुत शुभकामनाएँ
थांक यू थांक यू सिर
साथियों आज देश में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें देश की नारीशक्ति पीछे रह गई हो
एक और क्षेत्र जहाँ महिलाओं ने अपनी नेतृत्व क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन किया है वो है प्राकृतिक खेती जल संरक्षण और स्वच्छता
केमिकल से हमारी धरती माँ को जो कष्ट हो रहा है जो पीड़ा हो रही है जो दर्द हो रहा है हमारी धरती माँ को बचाने में देश की मातृशक्ति बड़ी भूमिका निभा रही है
देश के कोनेकोने में महिलायें अब प्राकृतिक खेती को विस्तार दे रही हैं
आज अगर देश में जल जीवन मिशन के तहत इतना काम हो रहा है तो इसके पीछे पानी समितियों की बहुत बड़ी भूमिका है
इस पानी समिति का नेतृत्व महिलाओं के ही पास है
इसके अलावा भी बहनेंबेटियाँ जल संरक्षण के लिए चौतरफा प्रयास कर रही हैं
मेरे साथ फोन लाइन पर ऐसी ही महिला है कल्याणी प्रफुल्ल पाटिल जी
ये महाराष्ट्र की रहने वाली हैं
आइए कल्याणी प्रफुल्ल पाटिल जी से बात कर उनका अनुभव जानते हैं
कल्याणी जी नमस्ते
नमस्ते सर जी नमस्ते
कल्याणी जी पहले तो आप अपने विषय में अपने परिवार के विषय में अपने कामकाज विषय में जरा बताइए
सर मैं एमएससी माइक्रोबायोलॉजी हूँ और मेरे घर में मेरे पतिदेव मेरी सास है और मेरे दो बच्चे हैं और तीन साल से मैं अपने ग्राम पंचायत में कार्यरत हूँ
और फिर गाँव में खेती के काम में लग गई क्योंकि आपके पास बेसिक नाउलेज भी है आपकी पढ़ाई भी इस क्षेत्र में हुई है और अब आप खेती में जुड़ गई है तो क्या क्या नए प्रयोग किये हैं आपने
सर हमने जो दस प्रकार के हमारी वनस्पति है उसको एकत्रित करके उससे हमने आर्गेनिक फवारणीस्प्रे बनाया जैसे कि जो हम पेस्टीसाइड वगैहरा स्प्रे करते तो उस से पेस्ट वगैरह जो हमारी मित्र कीटpest रहती है वो भी नष्ट हो रहे और हमारी सोइल का पॉल्यूशन होता है जो तो तब केमिकल चीज़े जो पानी में घुलमिल रही हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी पर भी हानिकारक परिणाम दिख रहे हैं उस हिसाब से हमने कम से कम पेस्टीसाइड का उसे कर के
तो एक प्रकार से आप पूरी तरह प्राकृतिक खेती की तरफ जा रही हैं
हाँ जो अपनी पारंपरिक खेती है सर वैसे हमने की पिछले साल
क्या अनुभव आया प्राकृतिक खेती में
सर जो हमारी महिलाएं हैं उनको जो खर्च है वो कम लगा और जो प्रोडक्ट हैं सर तो वो समाधान पाकर हमने विथआउट पेस्ट वो किया क्योंकि अब कैंसर के प्रमाण जो बढ़ रहे हैं जैसे शहरी भागों में तो है ही लेकिन गाँव में भी हमारी उसका प्रमाण बढ़ रहा है तो उस हिसाब से अगर आप अपने आगे के परिवार को अपने सुरक्षित करना है तो ये मार्ग अपनाना जरूरी है इस हिसाब से वो महिलाएं भी सक्रिय सहभाग इसके अन्दर दिखा रही हैं
अच्छा कल्याणी जी आपने कुछ जल संरक्षण में भी काम किया है उसमें क्या किया है आपने
सर रेनवाटर हार्वेस्टिंग जो हमारे शासकीय जितने भी इमारते हैं जैसे कि प्राथमिक शाला हुई आँगनबाड़ी हुआ हमारी ग्राम पंचायत की जो बिल्डिंग है वहां के जो पानी है बारिश का वो सब इकट्ठा करके हमने एक जगह पर कलेक्ट किया हुआ है और जो रिचार्ज शाफ्ट है सर कि बारिश का पानी जो गिरता है वो जमीन के अन्दर परकोलेट होना चाहिए तो उस हिसाब से हमने 20 रिचार्ज शाफ्ट हमारे गाँव के अन्दर किये हुए हैं और 50 रिचार्ज शाफ्ट का सैंक्शन हो गया है
अब जल्दी ही उसका भी काम चालू होने वाला है
चलिए कल्याणी जी आपसे बात करके बहुत ख़ुशी हुई
आपको बहुतबहुत शुभकामनाएं
सर धन्यवाद सर धन्यवाद
मुझे भी आपसे बात करके बहुत ख़ुशी हुई
मतलब मेरा जीवन सम्पूर्ण रूप से सार्थक हुआ ऐसा मैं मानती हूँ
बस सेवा कीजिए
चलिए आप का नाम ही कल्याणी है तो आपको तो कल्याण करना ही करना है
धन्यवाद जी
धन्यवाद सर
साथियो चाहे सुनीता जी हो या कल्याणी जी अलगअलग क्षेत्रों में नारीशक्ति की सफलता बहुत प्रेरक है
मैं एक बार फिर हमारी नारीशक्ति की इस स्पिरिट की ह्रदय से सराहना करता हूँ
मेरे प्यारे देशवासियो आज हम सबके जीवन में टेक्नोलॉजी का महत्त्व बहुत बढ़ गया है
मोबाइल फोन डिजिटल गैजेट्स हम सबकी ज़िन्दगी का अहम हिस्सा बन गए हैं
लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि डिजिटल गैजेट्स की मदद से अब वन्य जीवों के साथ तालमेल बिठाने में भी मदद मिल रही है
कुछ दिन बाद 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस है
इस दिन को वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फ़ैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है
इस वर्ष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम में डिजिटल इनोवेशन को सर्वोपरि रखा गया है
आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे देश के अलगअलग हिस्सों में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए टेक्नोलॉजी का खूब उपयोग हो रहा है
पिछले कुछ वर्षों में सरकार के प्रयासों से देश में बाघों की संख्या बढ़ी है
महाराष्ट्र के चंद्रपुर के टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या ढ़ाईसौ से ज्यादा हो गयी है
चंद्रपुर जिले में इंसान और बाघों के संघर्ष को कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जा रही है
यहाँ गांव और जंगल की सीमा पर कैमरे लगाए गए हैं
जब भी कोई बाघ गांव के करीब आता है तब एआई की मदद से स्थानीय लोगों को मोबाईल पर अलर्ट मिल जाता है
आज इस टाइगर रिजर्व के आसपास के 13 गांवों में इस व्यवस्था से लोगों को बहुत सुविधा हो गयी है और बाघों को भी सुरक्षा मिली है
साथियो आज युवा एंटरप्रेन्योर्स भी वन्य जीव संरक्षण और इकोटूरिज्म के लिए नएनए इनोवेशन सामने ला रहे हैं
उत्तराखंड के रूड़की में रोटर प्रिसिजन ग्रुप्स ने वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ओएफ इंडिया के सहयोग से ऐसा ड्रोन तैयार किया है जिससे केन नदी में घड़ियालों पर नजर रखने में मदद मिल रही है
इसी तरह बेंगलुरु की एक कंपनी ने बघीरा और गरुड़ नाम का App तैयार किया है
बघीरा App से जंगल सफारीSAFARI के दौरान वाहन की स्पीड और दूसरी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है
देश के कई टाइगर रिजर्व में इसका उपयोग हो रहा है
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ओएफ थिंग्स पर आधारित गरुड़ App को किसी सीसीटीवी से कनेक्ट करने पर रियल टाइम अलर्ट मिलने लगता है
वन्यजीवों के संरक्षण की दिशा में इस तरह के हर प्रयास से हमारे देश की जैव विविधता और समृद्ध हो रही है
साथियो भारत में तो प्रकृति के साथ तालमेल हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है
हम हजारों वर्षों से प्रकृति और वन्य जीवों के साथ सहअस्तित्व की भावना से रहते आये हैं
अगर आप कभी महाराष्ट्र के मेलघाट टाइगर रिजर्व जाएंगे तो वहाँ स्वयं इसे अनुभव कर सकेंगे
इस टाइगर रिजर्व के पास खटकली गांव में रहने वाले आदिवासी परिवारों ने सरकार की मदद से अपने घर को होम स्टे में बदल दिया है
ये उनकी कमाई का बहुत बड़ा साधन बन रहा है
इसी गांव में रहने वाले कोरकू जनजाति के प्रकाश जामकर जी ने अपनी दो हेक्टेयर जमीन पर सात कमरों वाला होम स्टे तैयार किया है
उनके यहाँ रुकने वाले पर्यटकों के खानेपीने का इंतजाम उनका परिवार ही करता है
अपने घर के आसपास उन्होंने औषधीय पौधों के साथ आम और कॉफ़ी के पेड़ भी लगाए हैं
इससे पर्यटकों का आकर्षण तो बढ़ा ही है दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार के नए अवसर बने हैं
मेरे प्यारे देशवासियो जब पशुपालन की बात करते हैं तो अक्सर गायभैंस तक ही रुक जाते हैं
लेकिन बकरी भी तो एक अहम पशुधन है जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती है
देश के अलगअलग क्षेत्रों में अनेकों लोग बकरी पालन से भी जुड़े हुए हैं
ओडिशा के कालाहांडी में बकरी पालन गाँव के लोगों की आजीविका के साथसाथ उनके जीवन स्तर को ऊपर लाने का भी एक बड़ा माध्यम बन रहा है
इस प्रयास के पीछे जयंती महापात्रा जी और उनके पति बीरेन साहू जी का एक बड़ा फैसला है
ये दोनों बेंगलुरु में मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स थे लेकिन इन्होंने ब्रेक लेकर कालाहांडी के सालेभाटा गाँव आने का फैसला लिया
ये लोग कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे यहाँ के ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान भी हो साथ ही वो सशक्त भी बनें
सेवा और समर्पण से भरी अपनी इसी सोच के साथ इन्होंने माणिकास्तु एग्रो की स्थापना की और किसानों के साथ काम शुरू किया
जयंती जी और बीरेन जी ने यहाँ एक दिलचस्प माणिकास्तु गोट बैंक भी खोला है
वे सामुदायिक स्तर पर बकरी पालन को बढ़ावा दे रहे हैं
उनके गोट फार्म में करीब दर्जनों बकरियां हैं
माणिकास्तु गोट बैंक इसने किसानों के लिए एक पूरा सिस्टम तैयार किया है
इसके जरिए किसानों को 24 महीने के लिए 2 बकरियां दी जाती हैं
2 वर्षों में बकरियां 9 से 10 बच्चों को जन्म देती हैं इनमें से 6 बच्चों को बैंक रखता है बाकी उसी परिवार को दे दी जाती है जो बकरी पालन करता है
इतना ही नहीं बकरियों की देखभाल के लिए जरूरी सेवाएँ भी प्रदान की जाती हैं
आज 50 गाँव के 1000 से अधिक किसान इस दंपत्ति के साथ जुड़े हैं
उनकी मदद से गाँव के लोग पशुपालन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं
मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि विभिन्न क्षेत्रों में सफल प्रोफेशनल्स छोटे किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए नएनए तरीक़े अपना रहे हैं
उनका यह प्रयास हर किसी को प्रेरित करने वाला है
मेरे प्यारे देशवासियो हमारी संस्कृति की सीख है परमार्थ परमो धर्मः यानि दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है
इसी भावना पर चलते हुए हमारे देश में अनगिनत लोग निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं
ऐसे ही एक व्यक्ति हैं बिहार में भोजपुर के भीम सिंह भवेश जी
अपने क्षेत्र के मुसहर जाति के लोगों के बीच इनके कार्यों की खूब चर्चा है
इसलिए मुझे लगा कि क्यों ना आज इनके बारे में भी आपसे बात की जाय
बिहार में मुसहर एक अत्यंत वंचित समुदाय रहा है बहुत गरीब समुदाय रहा है
भीम सिंह भवेश जी ने इस समुदाय के बच्चों की शिक्षा पर अपना फोकस किया है ताकि उनका भविष्य उज्ज्वल हो सके
उन्होंने मुसहर जाति के करीब 8 हज़ार बच्चों का स्कूल में दाखिला कराया है
उन्होंने एक बड़ी लाइब्रेरी भी बनवाई है जिससे बच्चों को पढाईलिखाई की बेहतर सुविधा मिल रही है
भीम सिंह जी अपने समुदाय के सदस्यों के जरूरी डॉक्यूमेंट्स बनवाने में उनके फॉर्म भरने में भी मदद करते हैं
इससे जरुरी संसाधनों तक गाँव के लोगों की पहुँच और बेहतर हुई है
लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो इसके लिए उन्होंने 100 से अधिक मेडिकल कैम्प्स लगवाए हैं
जब कोरोना का महासंकट सिर पर था तब भीम सिंह जी ने अपने क्षेत्र के लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए भी बहुत प्रोत्साहित किया
देश के अलगअलग हिस्सों में भीम सिंह भवेश जी जैसे कई लोग हैं जो समाज में ऐसे अनेक नेक कार्यों में जुटे हैं
एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हम इसी प्रकार अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो यह एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण में बहुत ही मददगार साबित होगा
मेरे प्यारे देशवासियो भारत की सुन्दरता यहाँ की विविधता और हमारी संस्कृति के अलगअलग रंगों में भी समाहित है
मुझे ये देखकर अच्छा लगता है कि कितने ही लोग निस्वार्थ भाव से भारतीय संस्कृति के संरक्षण और इसे सजानेसँवारने के प्रयासों में जुटे हैं
आपको ऐसे लोग भारत के हर हिस्से में मिल जाएंगे
इनमें से बड़ी संख्या उनकी भी है जो भाषा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं
जम्मूकश्मीर में गान्दरबल के मोहम्मद मानशाह जी पिछले तीन दशकों से गोजरी भाषा को संरक्षित करने के प्रयासों में जुटे रहे हैं
वे गुज्जर बकरवाल समुदाय से आते हैं जो कि एक जनजातीय समुदाय है
उन्हें बचपन में पढ़ाई के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ा था वो रोजाना 20 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करते थे
इस तरह की चुनौतियों के बीच उन्होंने मास्टर्स की डिग्री हासिल की और ऐसे में ही उनका अपनी भाषा को संरक्षित करने का संकल्प दृढ़ हुआ
साहित्य के क्षेत्र में मानशाह जी के कार्यों का दायरा इतना बड़ा है कि इसे करीब 50 संस्करणों में सहेजा गया है
इनमें कविताएं और लोकगीत भी शामिल हैं
उन्होंने कई किताबों का अनुवाद गोजरी भाषा में किया है
साथियो अरुणाचल प्रदेश में तिरप के बनवंग लोसू जी एक टीचर हैं
उन्होंने वांचो भाषा के प्रसार में अपना अहम योगदान दिया है
यह भाषा अरुणाचल प्रदेश नागालैंड और असम के कुछ हिस्सों में बोली जाती है
उन्होंने एक लैंग्वेज स्कूल बनवाने का काम किया है
इसके वांचो भाषा की एक लिपि भी तैयार की है
वो आने वाली पीढ़ियों को भी वांचो भाषा सिखा रहे हैं ताकि इसे लुप्त होने से बचाया जा सके
साथियो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो गीतों और नृत्यों के माध्यम से अपनी संस्कृति और भाषा को संरक्षित करने में जुटे हैं
कर्नाटका के वेंकप्पा अम्बाजी सुगेतकर उनका जीवन भी इस मामले में बहुत प्रेरणादायी है
यहां के बागलकोट के रहने वाले सुगेतकर जी एक लोक गायक हैं
इन्होनें 1000 से अधिक गोंधली गाने गाए हैं साथ ही इस भाषा में कहानियों का भी खूब प्रचार प्रसार किया है
उन्होंने बिना फीस लिए सैकड़ों विद्यार्थियों को ट्रेनिंग भी दी है
भारत में उमंग और उत्साह से भरे ऐसे लोगों की कमी नहीं जो हमारी संस्कृति को निरंतर समृद्ध बना रहे हैं
आप भी इनसे प्रेरणा लीजिये कुछ अपना करने का प्रयास करिए
आपको बहुत संतोष का अनुभव होगा
मेरे प्यारे देशवासियों दो दिन पहले मैं वाराणसी में था और वहां मैंने एक बहुत ही शानदार फोटो प्रदर्शनी देखी
काशी और आसपास के युवाओं ने कैमरे पर जो मोमेंट कैप्चर किए हैं वो अदभुत हैं
इसमें काफी फोटोग्राफ ऐसी हैं जो मोबाईल कैमरे से खींची गई थी
वाकई आज जिसके पास मोबाईल है वो एक कंटेंट क्रिएटर बन गया है
लोगों को अपना हुनर और प्रतिभा दिखाने में सोशल मीडिया ने भी बहुत मदद की है
भारत के हमारे युवासाथी कंटेंट क्रिएशन के क्षेत्र में कमाल कर रहे है
चाहे कोई भी सोशल मीडिया प्लैटफार्म हो आपको अलगअलग विषयों पर अलगअलग कंटेंट शेयर करते हमारे युवा साथी मिल ही जाएंगे
टूरिज्म हो सोशल काउज हो पब्लिक पार्टिसिपेशन हो या फिर प्रेरक जीवन यात्रा इनसे जुड़े तरहतरह के कंटेंट्स सोशल मीडिया पर मौजूद हैं
कंटेंट क्रिएट कर रहे देश के युवाओं की आवाज आज बहुत प्रभावी बन चुकी है
उनकी प्रतिभा को सम्मान देने के लिए देश में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड शुरू किया गया है
इसके तहत अलगअलग कैटेगरीज में उन चंगे मेकर्स को सम्मानित करने की तैयारी है जो सामाजिक परिवर्तन की प्रभावी आवाज बनने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं
यह कंटेस्ट माइगोव पर चल रहा है और मैं कंटेंट क्रिएटर्स को इससे जुड़ने के लिए आग्रह करूँगा
आप भी अगर ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट क्रिएटर्स को जानते हैं तो उन्हें नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के लिए जरुर नॉमिनेट करें
मेरे प्यारे देशवासियो मुझे इस बात की खुशी है कि कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग ने एक और अभियान की शुरुआत की है मेरा पहला वोट देश के लिए
इसके जरिए विशेष रूप से फर्स्ट टाइम वोटर्स से अधिकसेअधिक संख्या में मतदान करने का आग्रह किया गया है
भारत को जोश और ऊर्जा से भरी अपनी युवा शक्ति पर गर्व है
हमारे युवासाथी चुनावी प्रक्रिया में जितनी अधिक भागीदारी करेंगे इसके नतीजे देश के लिए उतने ही लाभकारी होंगे
मैं भी फर्स्ट टाइम वोटर्स से आग्रह करूंगा कि वे रेकॉर्ड संख्या में वोट करें
18 का होने के बाद आपको 18वीं लोकसभा के लिए सदस्य चुनने का मौका मिल रहा है
यानि ये 18वीं लोकसभा भी युवा आकांक्षा का प्रतीक होगी
इसलिए आपके वोट का महत्व और बढ़ गया है
आम चुनावों की इस हलचल के बीच आप युवा ना केवल राजनीतिक गतिविधियों का हिस्सा बनिए बल्कि इस दौरान चर्चा और बहस को लेकर भी जागरूक बने रहिए
और याद रखिएगा मेरा पहला वोट देश के लिए
मैं देश के इन्फ्लूएंसर्स को भी आग्रह करूँगा चाहे वो खेल जगत के हों फिल्म जगत के हों साहित्य जगत के हों दूसरे प्रोफेशनल्स हों या हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब के इन्फ्लूएंसर्स हों वो भी इस अभियान में बढचढ़कर हिस्सा लें और हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स को मोटीवेट करें
साथियो मन की बात के इस एपिसोड में मेरे साथ इतना ही
देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है और जैसा कि पिछली बार हुआ था संभावना है कि मार्च के महीने में आचारसंहिता भी लग जाएगी
ये मन की बात की बहुत बड़ी सफलता है कि बीते 110 एपिसोड में हमने इसे सरकार की परछाई से भी दूर रखा है
मन की बात में देश की सामूहिक शक्ति की बात होती है देश की उपलब्धि की बात होती है
ये एक तरह से जनता का जनता के लिए जनता द्वारा तैयार होने वाला कार्यक्रम है
लेकिन फिर भी राजनीतिक मर्यादा का पालन करते हुए लोकसभा चुनाव के इन दिनों में अब अगले तीन महीने मन की बात का प्रसारण नहीं होगा
अब जब आपसे मन की बात में संवाद होगा तो वो मन की बात का 111वाँ एपिसोड होगा
अगली बार मन की बात की शुरुआत 111 के शुभ अंक से हो तो इससे अच्छा भला क्या होगा
लेकिन साथियो आपको मेरा एक काम करते रहना है
मन की बात भले तीन महीने के लिए रूक रहा है लेकिन देश की उपलब्धियां थोड़ी रुकेंगी इसलिए आप मन की बात हैशटैग के साथ समाज की उपलब्धियों को देश की उपलब्धियों को सोशल मीडिया पर डालते रहें
कुछ समय पहले एक युवा ने मुझे एक अच्छा सुझाव दिया था
सुझाव ये कि मन की बात के अब तक के एपिसोड में से छोटेछोटे वीडियो यूट्यूब शॉर्ट्स के रूप में शेयर करना चाहिए
इसलिए मैं मन की बात के श्रोताओं से आग्रह करूँगा कि ऐसे शॉर्ट्स को खूब शेयर करें
साथियो जब अगली बार आपसे संवाद होगा तो फिर नई ऊर्जा नई जानकारियों के साथ आपसे मिलूंगा
आप अपना ध्यान रखिये बहुत बहुत धन्यवाद